शायद वे इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ये एक ग्राउंड जैसा प्रतीत होता है जहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

देखा जा रहा है कि सामने की और एक कमरा भी है और आस पास काफी घास भी है।

एक कुत्ता है जो कि इसके चारों तरफ घूमने का प्रयास कर रहा है।

कुछ घर भीं आस पास में नजर आ रहें हैं।

दुकान का विज्ञापन है जिसका नाम है बिग मोबाइल्स --

यह तस्वीर विवान के पहले जन्मदिन को दर्शाता है।

तो आप यहां पर जा सकते हैं विजिट कर सकते हैं और चख सकते हैं इनका स्वादिष्ट खाना।

इनके पास लाइव डी_जे वेव पूल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है।

और लोग यहां आकर बहुत खुश भी होते हैं।

स्विच ऑन ऑफ बटन और ऐसी काफी सारे समान जोकि रिपेयरिंग मे यूस होते है उन्हें भी यहां पे रखा और दर्शाया गया है।

गवर्नमेंट इग्जाम की तैयारी से लेकर आई_आई_टी नीट जैसे पेपरों की किताब को भी यहां पे दर्शाया गया है।

आप यहां पर जा सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा किताब अपनी जरूरत के हिसाब से ला सकते हैं।

सुजुकी ब्रांड की हर प्रकार की गाड़ियां उपलब्ध है।

बाहर की ओर लगे हुए झूले पर बच्चे झूला झूल रहे हैं और अपनी मस्ती में मस्त हैं।

ढका हुआ मंडप और पृष्ठभूमि में हरियाली शामिल दिखाई दे रही है।

जो कि यह दर्शाता है कि यह इमारत उसे संस्था का प्रवेश द्वार है।

और बहुत सारे विज्ञापनों का भी इस्तेमाल किया गया है।

अपोलो डायग्नोस्टिक एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं इंडिया का।